एक टेबल पर हरे मिर्चे और कुछ सलाद रखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग कुछ बैठे हुए और कुछ लोग खड़े होकर अपनी बसों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इसका जो फर्श है वो क्रीम कलर का टाइल लगाया गया है आसपास में फिलहाल कोई व्यक्ति बैठा हुआ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है।

इस पिक्चर के अंदर एक बड़े से एयरपोर्ट की फोटो को दिखाया गया है।

इस पिक्चर के अंदर एक बड़े से शोरूम की फोटो को दिखाया गया है।